चित्र में एक दुकान दिखाई दे रही है।

ड्रीम आशियाना लिखा हुआ दिख रहा है।

गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं।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

जो कि पत्थर से बनी हुई है।

मुझे इस चित्र में एक किला दिख रहा है।

मुझे आसमान दिखाई दे रहा है।

हरी घास दिखाई दे रही है।

टोल टैक्स दिखाई दे रहा है।

कुछ कार दिखाई दे रही है।

सोफा रखा हुआ दिख रहा है।

और हरे रंग की जॅकेट पहन रखी है।

एक ट्रक दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में एक ग्राउंड दिख रहा है।

मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में एक शोरूम दिख रहा है।

जिसमें बालकनी में बहुत सारे गमले रखे हुए हैं।

और कुर्सियां रखी हुई है।

मुझे बहोत सारे फूल दिखाई दे रहे है।

गेट पर सजावट दिख रही है।

मुझे इस चित्र में एक जीन दिखाई दे रही है।

जिसका रंग काला दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में एक राखी की दुकान दिख रही है।

मेहंदी लिखा हुआ दिख रहा है।

जहां पर कुछ लोग खाना खा रहे हैं।

यहां पर कुछ लोग दिख रहे हैं।

एक आदमी रुमाल बांधा हुआ है।

एक पुरुष दिखाई दे रहे है।